यहाँ मछरी बिक रहा है बहुत सारा मछरी है छोटा है और बड़ा भी मछरी बिक रहा है |

और दो सोफा भी लगा है बहुत अच्छा सजावट भी हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।